स्विमिंग पूल के अंदर कि ओर दो स्लाइड भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ बाइकें खड़ी हुई नजर आ रही है।

बनाई हुई शेप दी हुई दिखाई दे रही है और उसके आस पास बाउंड्रीयां भी बनाई हुई दिखाई --

आगे की और कुछ मालाएं भी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक फन किंगडम के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर ये एक बहोत ही बड़ा सा गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जोकि यहां पर बहोत सारे अलग अलग कलर के और अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पौधे गमले में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी नर्सरी की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के छोटे-छोटे गमले --

ये किसी गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है।

एक छोटा सा सफेद कलर का काउंटर रखा है जिसपे एक भौगोनी भी रखी दिखाई दे रही है।

पास ही में एक पीले कलर का काउंटर रखा है जिस पे पानी का कैंपर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक आइसक्रीम का फ्रिज रखा हुआ है।

दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है जिसपे दुकान वाले का नाम लिखा है क्या क्या आइटम रखता है वो लिखा है।

यहां पर तीन दुकानें बनी हुई है जो कि तीनों कार की सर्विस की दुकानें बनी हुई है।

जहां पर एक झोपड़ी जैसा बना हुआ है जिसपे कुछ तिरंगा झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।